दही देने के लिए या मक्खन देने के लिए यहाँ आते हैं बहुत दूर-दूर से और बहुत फ्रेश मिलते हैं यहाँ पर अह दूध-दही सब ।

यह एक कपड़ा का दुकान दिखाया जा रहा है । ये कपड़ा का दुकान देखने में बहुत अच्छा लग रहा है |

यह एक फूल का दूकान दिखाया जा रहा है।

यहाँ बहुत आदमी आते हैं डेंटल कराने के लिए और अपना हेल्थ दिखाने के लिए।

अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत ही आदमी रहते हैं बहुत आदमी का यहाँ घर भी बना हुआ है।